यहां पे एक बाइक है ऊपर खुला आसमान है यहां पर हड हरे पेड़ है हौर एक बाइक है।

और बहुत तरीके-तरीके के अलग-अलग तरीके के पेड़ हैं।

ये एक शॉप है बनीना और अंडरगारमेंट्स की एक शॉप है।

पिंक कलर के व्हाइट कलर के इसपे लगे हुए हैं और ये रेड और व्हाइट कलर का टावर है।

दो जन जिम कर रहे हैं और इधर पे लाइट चालु है इधर एक व्हाइट कलर ए_सी है।

पांच बाइक खड़े हुए हैं एक ट्रैक्टर खड़ी खड़ी हुई है और एक छोटी लॉरी खड़ी हुई है।

दो बड़े स्टिक है और बहोत सारी बॉले हैं व्हाइट कलर के रेड कलर के जो बहोत तरीके के बॉल --

है। एक ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का बोल है।